वह यहां पे कुछ लोगों की लाइन लगी हुई है जहां पे कुछ महिला खड़ी हुई कुछ शॉल ओडे हुई है।

यहा एक लेडिस फूलो में पानी दे रही है यहाँ पे पार्किंग का रास्ता बना हुआ है आगे में कु--

खुर्सिया रखी हुई है ऊपर में पेड़ दिख रहे है लाईटस लगी हुई दिख रही है यहा पास में चेयर भी दिख रही है उसपे शायद कुछ लिखा हुआ हैं। औरत जो है सटक--

नीचे में कुछ पेड़ के ऊपर कुछ डंडी रखी हुई है और कुछ बर्फ जैसा लग रहा है।

कुछ खड़े हुए है कुछ पैर दिख रहा है कुछ पत्थर दिख रहा है और सामने बाजू में कुछ लकड़ा है हाथ में कुछ--